इसमें गुब्बारे दिख रहे हैं। लड़का दिख रहा है।

इसमें पेड़ दिख रहें हैं | आदमी दिख रहें हैं।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं। आसमान दिख रहा है।

इसमें आदमी दिख रहे हैं। लाइटें जल रही हैं।

सोफा दिख रही है। फूल दिख रहे हैं। बहोत सुन्दर सजावट है।